और यहाँ पे ऊपर की तरफ पंखा लगा है और यहाँ पे चारों तरफ इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं और सामने की तरफ एक कूलर भी रखा है।

यही होगा इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है।

एक औरत है जिसने मम चुन्नी सिर से साड़ी ओड़ रखी है।

जो अह क्लासिकल डांस कर रही है और एक यहाँ पे मम बाल खोल के एक औरत लड़की खड़ी हुई है।

और यहाँ पर जो है अह बहुत सारे लड़के हैं जो लाल रंग के कुर्ता या टी-शर्ट पहने हुए हैं टोपी लगाए हुए हैं और वो फोटो खिंचवा रहे हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा पार्क है और इधर की तरफ कुछ बिल्डिंगें लगी बनी हुई हैं सरकारी बिल्डिंग है।

अह बहुत सारे पेड़-पौधे हैं पार्क में और ये बहुत लंबा चौड़ा--

और भी बहुत तरीके के पेड़ इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं।

यहाँ पर ये बाजार है और यहाँ पर जो है एक पार्किंग बनी हुई है।

और उस मतलब दीवार सी खड़ी है चारों तरफ से और एक टीन शेड पड़ा हुआ है।

एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जो है बहुत सारी मेजें लगी हुई हैं और उनके चारों तरफ--

कागज़ से बना के जो है टांगा गया है और यहाँ पर--

यहाँ पर फलों की दुकान है और यहाँ पर बहुत सारे फल रखे हैं।

और जो अखबार काट के उसके नीचे कागज रखते हैं वो सब बहुत सारे हैं यहाँ पर अनार है और केले हैं सेब है।

यहाँ पर एक टैटू की दुकान है बीजेड टैटू स्टूडियो है यहाँ बहुत सारे--

पेंटिंग्स लगी हुई है और बहुत सारे बलब जल रहे हैं यहाँ पर--

और कुछ हरियाली सी है और यहाँ पर जो है कच्ची ईंटों--

कच्ची जो है मट्टी से जो है सड़क बनी हुई है और एक बड़ा पत्थर भी यहाँ पे--

ये एक होटल है और होटल में एक आदमी अंदर को आ रहा है और दो तीन गाड़ियां वहाँ पर खड़ी हुई है बाहर की तरह--

कोचिंग क्लास चल रही है और यहाँ पर सब बच्चे स्कूल उस पे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

और एक सामने की तरफ मेज़ रखी है और उस वहाँ भी कुर्सी रखी हुई है।

बाजार है और यहां पर जो है कुछ ठेले हैं जैसे यहाँ पर टमाटर बिक रहा बंद गोभी है बैंगन है फूल गोभी है।

और जैसे इधर फल है अन है अनार है संतरे हैं।

द कॉफी अह कोर्ट यार्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर कॉफी की दुकान है।

और सामने की तरफ बहुत सारी पेंटिंगें लगी हुई है और कुछ--

पर एक मकान सा है और यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड केंद्र--

दीवाल से टेक कर के पैर रखे हुए हैं और--

और दो लड़के हैं जो फोटो खींच के वीडियो बना रही हैं।

उसमें लाइट भी लगी हुई है और यहाँ पर जो एक दस्तवीन है।

रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बहुत सारी अ ए य मेजें लगी हुई है।

और यहाँ पे हर तरह हर मेज पे अलग-अलग सेट बना हुआ है।

और यहाँ पर अ अ कुछ मंदिर सा बना हुआ है छत बनी हुई है उसकी और यहाँ पे--

और यहाँ पे पीछे की तरफ से यहाँ पे पेड़ लगा रखे हैं बहुत सारे--

जामिया है और बहुत तरीके तरीके का सामान है।

और वहाँ पर जो है बच्चे को लेकर वो लोग जा रहे हैं।

और उनका कोच जो है उन्हें सिखा रहा है योगा कर रहे हैं।

और अंदर की तरफ एक डेंजर उसका फोटो भी बना हुआ है।

यहाँ पर एक रोड़ है और ये इसके किनारे-किनारे पे यहाँ पे मकान बने हुए हैं और दो बड़े-बड़े यहाँ पे लेटर बॉक्स भी रखे हुए हैं।

ये चर्च है और चर्च में ए ए बहुत सारे लोग जो हैं एक किताब पढ़ रहे हैं।

ये ए_टी_एम है और यहाँ पर र र र जो है कुछ--

और इधर कार खड़ी है और कुछ स्कूटी हैं बाइके हैं।

और यहाँ पर जो है काँटे लगे हुए हैं सरिए जो होते हैं वो लगे और पेड़ भी हैं और उधर की तरफ बहोत सारे पेड़ है और बहोत-बहोत बड़ी यहाँ पर दीवारें भी हैं।

और वो आ ऊपर के बाल छोड़ दिए हैं और साइड से जो है उन्होने बिल्कुल छोटे-छोटे कर दिए हैं।

और यहाँ पर सामने की तरफ टी_वी है और रो र रोड लगी हुई है और उसके पीछे भी शीशा लगा हुआ है।

ये यहाँ पर राजेश्वर कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें हैं और हर एक घर बिल्डिंग में जो है ए_सी लगा हुआ है और कूलर भी लगा है ।

यहाँ पर एक पार्क है और यहाँ पर बीच में से एक जगह खुली हुई है अंदर जाने के लिए।